अपनी गले में हेडफोन लगाए हुए है तथा हाथ में घड़ी पहने हुए हैं।

डब्बो में अनेक प्रकार के शीशे रखे हुए।

लकड़ी के मेज में सफेद इनवर्टर भी रखा हुआ।

रोड में वाहने ठेला तथा बाइक भी नजर आ रहा है।

यह दुकान में कई नई साइकिल रखी हुई है एवं सफेद टाइल्स भी बढ़ा हुआ है।

सफेद लकीर खींचा हुआ है जिसमें चार बच्चे दौड़ लगा रहे है।

एक कोल्ड ड्रिंक का सेवन आप का बोर्ड भी लगा हुआ है।

बहुत सारे पेड़ एवम् पौधे भी मौजूद है।

यहां बैठने के टाइल्स भी लगे हुए हैं।

विद्युत के बहुत सारे बल्ब रोशनी दे रहे हैं।

सीढ़ी में बैठे हुए हैं तथा कोई रोड पे चल रहे हैं।

इस दृश्य में मुझे एक बड़ा नीला बस दिखाई दे रहा है जिसमें समीर ट्रेवल्स लिखा हुआ है।

यहाँ चैनल गेट लगा हुआ है तथा एक सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया का बोर्ड भी लगा हुआ है।

दुकान के बाहर कइ नई साइकिलें बड़ों के तथा बच्चों के साइकिल भी टंगी हुई --

बहुत सारे ईंटे एक जगह में रखे हुए है।

बिल्डिंग के बाहर बहुत सारे पौधे मौजूद है एवं सीढ़ी भी है।

एक ए_टी_एम का मशीन भी मौजूद है तथा कांच के दरवाजे भी लगे हुए है।

एक बड़ा स्टेज भी लगा हुआ है तथा बहुत सारे मनुष्य खड़े हैं तो कोई बैठे हुए।

हिंदी में बहुत सारे वर्ड लिखे हुए दीवार में।

एक बाइक भी खड़ी है तथा मीनार के बाहर एक बैंक का बोर्ड लगा हुआ है।

बहुत सारे लाइट की खंभे लगी हुए है एवं एक बड़ी रेस्टोरेंट भी नजर आ रही है।